उनमें अलग अलग कलर हुए पिंक वाइट येलो पर्पल ।

मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक तार में टंगे हुए है ऊपर सा --

यहाँ पर मुझे व्हाइट कलर दिखाई दे रहा हैं। वो व्हाइट कलर मुझे--

और एक यहां पर सफेदी कलर के है। यहां पर--

पर्पल कलर की दिख रही है और यहां पर वाइट कलर में कुछ--

लोहे की में एक्सरसाइज की मशीन दिखाइ दे रही है वो ब्लैक कलर की है।

यहां पे कैरेट ब्लैक कलर की खिड़कियां दिखाई दे रही है और मकान के सामने रोड है रोड पर बहुत सारे--

यहां पर मुझे एक बंगला दिखाई दे रहा है बंगले के सामने मुझे--

हम्म महरूम कलर दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर मुझे ब्लू दिख रहा है यहां पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे मैदान दिख रहा है मैदान में मुझे एक पेड़ है पेड़ की छावां है यहाँ पर --

और कुछ मकान भी यहां पर बने हुए हैं मकान का कलर व्हाइट लग रहा है और म--

यहां पर मुझे येलो कलर का बगीचा दिखाई दे रहा है और ये--

येलो भी दिखाई दे रहा है और मुझे यहां पर--

उसके ऊपर ग्रीन कलर का कुछ चढ़ा हुआ है यहां पे--

ब्लैक रेड वाइट सिल्वर --

के पर्दे लग रहे हैं और फनो के हाथ में कुछ रखा हुआ पीछे एक पोस्टर है।

और ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है ऊपर की शाम मुझे छाह दिख रही है गेट --

ये भी मुझे एक्सरसाइज की मशीन दिख रही है वो पूरे व्हाइट है।

कुर्सियाँ दिखाई दे रही है यहां पे एक हॉल है हॉल में मुझे ब्लैक कलर का--

रानी बहुत अच्छी सजी हुई है और

यहां पर मुझे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पानी में मुझे--

बाल से उठी हुई लग रही है और यहां पर कुछ ऊ--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

कांच लगा हुआ है और यहां पर मुझे कुछ ब्लैक कलर और व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है पोस्टर लगा हुआ है वो मुझे रेड कलर से दिख रहा --

यहां पर मुझे एक हॉस्पिटल लग रही--

जेंट्स उधर जा रहा है उसने धोती कुर्ता पहन रखा है कुर्ते का--